ये एक मोर है जिसने अपने पंख--

और एक बोर्ड पे नोटिस बोर्ड सा लगा पोस्टर लगा हुआ है।

माउस रखा हुआ हैऔर पेपर पिंच करने वाला--

जो बहुत ग्रीन कलर की है उसके ऊपर दो बोर्ड लगे हुए हैं।

सामने एक कार्टन सा बना हुआ है।

सामने बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये।

यहां पे आदमी खड़े हुए हैं।

और पीछे साइड घर दिख रहे हैं।

बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं।

दिन का टाइम है बहुत सारी तारे भी दिख रही हैं और बाहर साइड ट्यूबलाइट लगी हुई है अंदर भी ट्यूबलाइट लगी हुई है।

यहाँ पे बहुत सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं।

और बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

ये एक सिनेमा हॉल का पिक है।

पनीर व कॉंबो --

और लेडीज दो बैठी हुई हैं एक आदमी और लड़की बैठी हुई है जिसने रेड टॉप और ब्लू जींस पहना हुआ है।

यहाँ पे चेयर और टेबल लगी हुई है।

और बहुत सारी लाइटिंग हो रखी हैं।

एक लेडीज है जिसने साड़ी पहनी हुई है।

और शाम का टाइम हो रहा है।

और साइट में दिन का टाइम है।

और एक लेडीज और एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये एक डांस ये एक बहुत बड़ा हॉल है।

बहुत सारी लाइटें हो रखी हैं।

आसमान पूरा काला दिख रहा है।